मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात में आप सभी का बहुतबहुत स्वागत है
जुलाई का महीना यानि मानसून का महीना बारिश का महीना
बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं
यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है
पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएँ भी हुई हैं
इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया
लेकिन साथियो इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है
स्थानीय लोगों ने हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिनरात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है
किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है
सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है
साथियो बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरुरी होता है
आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60 हजार से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है
अभी 50 हजार से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है
हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नएनए प्रयास कर रहे हैं
आपको याद होगा कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था
वहाँ मेरी मुलाकात पकरिया गाँव के आदिवासी भाईबहनों से हुई थी
वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी
अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गाँव के आदिवासी भाईबहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है
यहाँ प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब सौ कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है
बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है
इससे इलाके में भूजल स्तर भी धीरेधीरे सुधरेगा
अब सभी गाँव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीबकरीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है
ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है
कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रेकॉर्ड बनाया गया है
इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की उसे पूरा वहाँ के लोगों ने किया
ऐसे प्रयास जनभागीदारी के साथसाथ जनजागरण के भी बड़े उदाहरण हैं
मैं चाहूँगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बनें
मेरे प्यारे देशवासियो इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है
सदाशिव महादेव की साधनाआराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है
इसीलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है
सावन के झूले सावन की मेहँदी सावन के उत्सव यानि सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है
साथियो हमारी इस आस्था और इन परम्पराओं का एक पक्ष और भी है
हमारे ये पर्व और परम्पराएँ हमें गतिशील बनाते हैं
सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त काँवड़ यात्रा पर निकलते हैं
सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुँच रहे हैं
आपको ये जानकार भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी रेकॉर्ड तोड़ रही है
अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुँच रहे हैं
अयोध्या मथुरा उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्दालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है
इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है उनका जीवनयापन हो रहा है
ये सब हमारे सांस्कृतिक जनजागरण का परिणाम है
इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं
मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहाँ अमरनाथ यात्रा करने आए थे
इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था
उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि ये खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए
ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं
यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है सबको कुछ न कुछ देता है
ऐसे ही एक फ्रेंच मूल की महिला हैं चार्लोट शोपा शारलोट शोपा
बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी
चार्लोट शोपा शारलोट शोपा एक योगा प्रैक्टीशनर हैं योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है
वो सेंचुरी पार कर चुकी हैं
वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं
वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती हैं
वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई हैं
इन से हर किसी को सीखना चाहिए
हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बल्कि उसे जिम्मेदारी से साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें
और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है
यहाँ देशभर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएँ बना रहे हैं
ये चित्र बूंदी शैली नाथद्वारा शैली पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे
इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा यानि कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथसाथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे
साथियो उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है
ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंग मोडभाई बरहाट जी ने बनाई थी
ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी
आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहौल था
अपनी परम्पराओं अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है उन्हें जीना होता है उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है
मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो कई बार जब हम इकोलॉजी फ्लोरा फौना बियो डाइवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है इनसे जुड़े एक्सपर्ट्स के विषय हैं लेकिन ऐसा नहीं है
अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटेछोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं
तमिलनाडु में वाडावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी
राघवन जी को पेंटिंग का शौक है
आप जानते हैं पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे
वो अलगअलग फ्लोरा और फौना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं
वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की पशुओं की आर्किड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं
कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है
मेरे प्यारे देशवासियो आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूँ
कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा
अमेरिका ने हमें सौ से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियाँ वापस लौटाई हैं
इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई
युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा
भारत लौटीं ये कलाकृतियाँ ढाई हजार साल से लेकर ढाई सौ साल तक पुरानी हैं
आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुर्लभ चीजों का नाता देश के अलगअलग क्षेत्रों से है
ये टेराकोटा स्टोन मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई हैं
इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य से भर देंगी
आप इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जायेंगे
इनमें 11वीं शताब्दी का एक खुबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा
ये नृत्य करती हुई एक अप्सरा की कलाकृति है जिसका नाता मध्य प्रदेश से है
चोल युग की कई मूर्तियाँ भी इनमें शामिल हैं
देवी और भगवान मुर्गन की प्रतिमाएँ तो 12वीं शताब्दी की हैं और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी हैं
भगवान गणेश की करीब एक हजार वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटाई गई है
ललितासन में बैठे उमामहेश्वर की एक मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है जिसमें वह दोनों नंदी पर आसीन हैं
पत्थरों से बनी जैन तीर्थंकरों की दो मूर्तियाँ भी भारत वापस आई हैं
भगवान सूर्य देव की दो प्रतिमाएं भी आपका मन मोह लेंगी
इनमें से एक सैंडस्टोन से बनी है
वापस लौटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्रमंथन की कथा को सामने लाता है
16वीं17वीं सदी के इस पनेल पैनल का जुड़ाव दक्षिण भारत से है
साथियो यहाँ मैंने तो बहुत कम ही नाम लिए हैं जबकि देखें तो यह लिस्ट बहुत लंबी है
मैं अमेरिकी सरकार का आभार करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी इस बहुमूल्य विरासत को लौटाया है
2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी तब भी कई कलाकृतियाँ भारत को लौटाई गई थी
मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को इस बात को ले करके देशभर में जागरूकता बढ़ेगी
इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा
मेरे प्यारे देशवासियो देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं
उन्होंने अपने बेटे को अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है
उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है
आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या
साथियो मुझे यह पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं ने
ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी
यह उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया
आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं
महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था
आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदरसुंदर कलाकृतियाँ और स्मृति चिन्ह बना रही हैं
माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी
मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें
इसका वहाँ बहुत असर हुआ है
आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं
भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नएनए रंग भर रही है
मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नएनए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है
राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है
जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था उन्हें अब देश का प्रथम गाँव मानकर विकास हो रहा है
ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में मुझे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते है
ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी हैं जो हाल ही में हज यात्रा करके आई हैं
उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है
ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या मेहरम के बिना पूरी की है और ये संख्या सौपचास नहीं बल्कि 4 हज़ार से ज्यादा है यह एक बड़ा बदलाव है
पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम हज करने की इजाजत नहीं थी
मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ
बिना मेहरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए ख़ासतौर पर वूमेन कोआर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी
साथियो बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है
हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है
अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है
हज यात्रा से लौटे लोगों ने विशेषकर हमारी माताओंबहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है
मेरे प्यारे देशवासियो जम्मूकश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हों हिघ अल्टीट्यूड्स में बाइक रैलीज हों चंडीगढ़ के लोकल क्लब्स हों और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हों ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है एडवेंचर की बात हो रही है
लेकिन बात कुछ और है ये आयोजन एक कॉमन काउज से भी जुड़ा हुआ है
और ये कॉमन काउज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान
जम्मूकश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं
यहाँ म्यूजिकल नाइट बाइक रैलीज जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं
चंडीगढ़ में इस मेसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है
वे इन्हें वादा वादा क्लब्स कहते हैं
वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज
पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैम्पेन चला रहे हैं
नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है
ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं
हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा
इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी
इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है
दो हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कारवाई की है
ड्रग्स की करीब डेढ़ लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है
भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रेकॉर्ड भी बनाया है
इन ड्रग्स की कीमत 12000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी
मैं उन सभी की सराहना करना चाहूँगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं
नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है
ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो इसके लिए जरुरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें
मेरे प्यारे देशवासियो जब बात ड्रग्स और युवापीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंगजर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ
ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजिल की
आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजिल कहां से आ गया यही तो ट्विस्ट है
एमपी के शहडोल में एक गांव है बिचारपुर
बिचारपुर को मिनी ब्राजिल कहा जाता है
मिनी ब्राजिल इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबाल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है
जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाक़ात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी
मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को ज़रूर जानना चाहिए
साथियो बिचारपुर गांव के मिनी ब्राजिल बनने की यात्रा दोढाई दशक पहले शुरू हुई थी
उस दौरान बिचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था नशे की गिरफ्त में था
इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था
एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस एहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना
रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया
कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गयी कि बिचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी
अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है
इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है
ये प्रोग्राम इतना सफ़ल हुआ है कि बिचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवेल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं
ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है
शहडोल और उसके आसपास के काफ़ी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं
यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे है जो नेशनल लेवेल पर खेल रहे हैं
फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं
आप सोचिये एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था नशे के लिए बदनाम था वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है
इसीलिए तो कहते हैं जहां चाह वहां राह
हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है
ज़रूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की
इसके बाद यही युवा देश का नाम रौशन भी करते हैं और देश के विकास को दिशा भी देते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं
अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीबकरीब दो लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है
ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे विविधता से भरे थे
इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि इनमें रेकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया
इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला
पहले कुछ महीनों की ही बात करें तो जनभागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले
ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर्स मीत का आयोजन
इसमें रेकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई
वहीँ आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मलेन का आयोजन हुआ
हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में किलों का फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है
इसी को दर्शाने वाली एक कैम्पेन किले और कहानियाँ यानी फोर्ट्स से जुड़ी कहानियाँ भी लोगों को खूब पसंद आई
साथियो आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूँज है 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है
शहीद वीरवीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा
इसके तहत देशभर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे
इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे
इस अभियान के तहत देशभर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी
देश के गाँवगाँव से कोनेकोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुचेंगी
ये यात्रा अपने साथ देश के अलगअलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी
7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वार मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा
ये अमृत वाटिका एक भारतश्रेठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी
मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी
मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे
आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuvagovin पर जरुर अपलोड करें
पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसे पूरा देश एक साथ आया था वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है
इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा आजादी के मूल्य का ऐहसास होगा
इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरुर जुड़ना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में आज बस इतना ही
अब कुछ ही दिनों में हम 15 ऑगस्ट आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे
देश की आजादी के लिए मरमिटने वालों को हमेशा याद रखना है
हमें उनके सपनों को सच करने के लिए दिनरात मेहनत करनी है और मन की बात देशवासियों की इसी मेहनत को उनके सामूहिक प्रयासों को सामने लाने का ही एक माध्यम है
अगली बार कुछ नये विषयों के साथ आपसे मुलाकात होगी
बहुत बहुत धन्यवाद